और अब आपस में बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हुए नजर आ रही हैं।

ऐसा मालूम होता है कि यहां ट्रक पैरेंट बॉडी को कसने का काम चल रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक ब्रिज के नजारे को दिखाया गया है जिसके नीचे कुछ शख्स खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमें एक मेले के नजारे को दिखाया गया है जहाँ पे चारों ओर बहुत से सख्स की भीड़ देखने को मिल रही है।